और कुछ दीवारों पर ग्रीन ग्रास की जो है वॉलपेपर लगी हुई है --

यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगे बनी हुई हैं सामने एक ब्राउन कलर की बिल्डिंग है--

रेड वाइट पोस्टर लगा है आसपास दुसरे भी पोस्टर भी लगे हैं सामने एक पेट्रोल पंप है--

रेड कलर का भी पोस्टर लगा है पेट्रोल पंप पर बहुत सारी कार खड़ी है और जो बाउड्री है उसके आसपास बहुत सारी बाइक भी खड़ी है--

और पेड़ बहुत सारे लगे हैं आगे पहाड़ भी है है और पूरा घना जंगल है जो पेड़ों से घना है--

वगेरा खड़ी हुई है और एक ब्लू कार भी आ रही है --

वाल पेपर लगी है एकनीले कलर का पर्दा लगा है ब्लैक कलर की टेबल --

सामने एक टेबल है जिसके ऊपर एक कार्टून्स रखे हैं बहुत सारे बॉक्स रखे हैं जिसमे सामान भरा हुआ है --

यहाँ पर एक पार्क है पार्क में घांस लगी हुई है बहुत सारे झूले लगे हुए है --

सामने एक कोल्ड ड्रिंक्स ब्लू कलर की फ्रिज रखी हुई है एक ब्लू वाइट कलर की मशीन भी रखी है।

गार्डन में घास लगी हुई है और बाउनद्रियों पर पौधे लगे हुए हैं जिनकी बहुत अच्छे से कटिंग --

बहुत से टावर लगे हैं आगे की तरफ भी बहुत सारे बड़े घने पेड़ लगे हुए हैं सामने की तरफ--

कुछ बच्चे भी यहाँ घूम रहे है पीछे की तरफ एक वाइट कलर का रूम बना हुआ है --

पर एक क्लास रूम है क्लास रूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो ब्लैक ब्लू कलर की--

पोस्टर दिवार पर लटका हुआ है साइड और भी रूम हैं --

और इलेक्ट्रिक यहाँ पर लैंप लगे हुए हैं बहुत सारे --

पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ घर के पीछे की तरफ आस पास में ही--

पोस्टर लगे हुए हैं एक चक्की है जहाँ पर बहुत सारी वाइट कलर की थेलियाँ रखी हुई हैं--

सामने डी_पी लगी है डी_पी के पास स्कूटी और बाइक ख ड़ी है --

सामने की तरफ कुछ गमले रखे है जिसमे पौधे लगे हुए हैं कुछ ग्राउंड खाली है आस पास कुछ बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं--

निकल कर भी जा रहे हैं कुछ आस पास में बहुत सारे --

और बच्चे भी खड़े हैं जेंट्स भी हैं बहुत सारी यहाँ पर इनकी भीड़ है बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है पेड़ भी है।

नीचे कि तरफ येल्लो और ग्रीन कलर की मेट बिछी हुई है बहुत सारी यहाँ पर --

अ सामने कि तरफ यहाँ पर जो जगह खाली है वहां लोगों की बहुत भीड़ है --

आसपास घांस लगी हुई है जो काफी सुन्दर है --